पार्क के साइड में बहुत बड़े बड़े पेड़ है।

गाड़ी खड़ी है। तथा एक गाड़ी के पास एक आदमी भी खड़ा है। गाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ी बोरी बँधी हुई है।

उस के बगल में कुछ महिलाएं बातचीत कर रही हैं।

तथा यहां पर कुछ बच्चे पानी का आनंद लेके नहा भी रहे हैं।

ताब भी रखे हुए हैंदुकान में एक आदमी बैठा हुआ है जो--

यह एक हवाई अड्डा पर खड़ा हवाई जहाज का फोटो है।

स्टेज के आगे का भाग कथार कलर से तथा पीछे का भाग सफेद कलर से रंग किया गया है।

छोटे छोटे स्टूल भी बने हुए हैं तथा स्टेज के पीछे एक नदी बह रही है नदी पर एक पुल भी बना हुआ है।

इस दुकान के बैनर नीचे बहोत सारे फूलों से सजावट भी की गई है।

यह एक पार्क का सीन है जिसमे बहोत बड़े बड़े दरवाजे बने हुए है तथा पार्क --

बहुत हरियाली भी है पार्क के बीच में एक तार का छोटा सा पेड़ है तथा--

पार्क में चारो तरफ बड़ी बड़ी लाइटे भी लगी हुई हैं।

एक रूम है जिसकी दीवार गुलाबी रंग से पेंट की गई है तथा इसका सीलिंग सफेद रंग से पेंट किया गया है।

यह एक पेड़ा का दुकान है जहां पे बहुत सारे पेड़े रखे हुए हैं दुकान के काउंटर पर एक आदमी भी बैठा हुआ है।

और यहां पर बहुत सारे पेड़े की दुकान है।

दूल्हा-दुल्हन एवं पंडित के सिवा छे लोग उपस्थित --

पेपर रखा हुआ है तथा उसे बगल मे एक आदमी मोबाइल चला रहा है।

दुकान में एक आदमी खड़ा है जो की सफेद रंग का शर्ट तथा काले रंग की पैंट पहना है।

दुकान के बड़े बगल में एक चूड़ी की भी दुकान है।

दुकान के काउंटर पर पीने के लिए पानी भी रखा हुआ है।

और यह एक बॉडी मसाज की दुकान है जहां पर दो--

एक रास्ता निकला है रास्ते के बगल में एक पानी का टैंक भी रखा हुआ है।

घर के सामने एक दीवार है जिस पर स्वच्छ भारत स्वच्छ झारखंड--

बहुत अच्छी लाइटिंग व्यवस्था की गई है होटल के।

सोफा लगा हुआ है हर टेबल पर चार गिलास एवं एक मग रखा हुआ है।

साइड के टेबल पर एक लड़का भी बैठा हुआ है।

होटल का सीलिंग काले रंग से पेंट होता था सीलिंग लाइट भी--

यह एक लाल रंग का खिला हुआ बहुत अच्छा--